एक आसमान दिखाई दे रहा है।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

एक आसमान दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यहां एक बहोत बड़ा मगरमच्छ दिखाई दे रहा है।

दे रही है आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

दी रहा है आसमान दिख रहा है।

कुछ टेबल और कुर्सियां दिखाई--

और एक गाड़ी दिखाई दे रही हैं।